यहाँ पर एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसमे पेट्रोल पंप की छत --

पहाडों का रंग भूरा नजर आ रहा है निचे जमीन नज़र --

हमें ये जमीन में मिटटी दिखाई दे रही है मिटटी का रंग पीला है आसपास पेड़ नजर आ रहे है पेड़ का रंग हरा है।

जिसका रंग गुलाबी और लाल नजर आ रहा है ऊपर एक चैनल दिखाई दे रहा है।

दीवार नजर आ रही है जिसका रंग सफ़ेद दिखाई दे रही है एक शटर नजर आ रहा है शटर का रंग ब्राउन दिख --

यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि --

सामने सोफे नजर आ रहै है सोफे का रंग काला दिखाई दे रहा है दिवार का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है सोफे पर कुशन रखे हुए है उनका रंग --

यहाँ एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में पानी दिखाई दे रहा है पानी का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है उसमे पाच बोट दिखाई दे रही है।

ऊँचे - ऊँचे पहाड़ दिखाई दे रहे है पहाड़ में हरी हरी घास नजर आ रही है आसपास पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ों का रंग हरा है।

पहाड़ दिखाई दे रहे है जिसका रंग भूरा नज़र आ रहा है ऊपर आसमान है जिसका रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।